एक शॉप के बाहर एक साइकल रखा हुआ है।

बस्ते के टाइप कुछ रखा हुआ है।

ये एक पेट्रोल पंप --

वहां पर चार फ्यूल टैंक है।

दो सामने हैं और दो पीछे हैं।

और एक बच्चे ने बटरफ्लाई का ड्रेस पहना है।

जहां से बहुत तेजी से पानी नीचे बह रहा--

उसके नीचे ही बहुत सारे पत्थर है।

और नीचे डी_जे का सेटअप लगा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम उषा फूड कॉर्नर --

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और सामने एक चेयर भी रखा हुआ है।

वो लोग ट्रेनिंग ले रहे।

सामने एक डिजाइन की टाइल्स है।

और टाइल्स रखे हुए है।

ये एक मंदिर लग रहा है।

दो तीन आदमी खड़े हुए--

ये एक काऊ है जिसका कलर वाइट एंड ब्लैक में है।

इसके पीछे ही एक विंडो है।

और सामने उसका खाना रखा हुआ है।

यहीं में कुछ लटका हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट लग रहा है।

और यहां पर कॉफी मशीन भी है।

और साइड में वर्कर्स काम कर रहे हैं।

एक पिंक कलर का फूल है।

बहुत वैराइटीज की फुल लगे हुए हैं।

बहोत सारे वैराइटीज की टाइल--

एक में और दो दो लोग हैं।

ये एक लाइब्रेरी की तरह है।

एक हेड फोन रखा हुआ है।

इसका बाहर एक गेट है।

ये एक जू का एंट्री गेट है।

पानी भी रखा हुआ है और सब कुछ--

इसका टायर भी दिख रहा है।

और यहां पर तीन आदमी हैं।

यह एक ऑफिस रूम लग रहा है।

और वॉल पे दो बोर्ड लगे हुए--

इसके सामने ही स्प्राइट के बोतल रखे हुए कोल्ड्रिंक्स रखे हुए और नीचे बहुत सारे के बिस्कुट रखे हुए।

और दो चेयर भी रखी हुई है।